यहां पे आप देख सकते हो ये बिल्डिंग बनी--

यहां पे आप देख सकते हो यह रिसेप्शन लिखा हुआ है यहां पर लाइट लगी हुई।

और यहां पे पेड़ वगैरा भी लगे हुए हैं।

यहां पे ये मिट्टी वगैरह भी--

ये यहां पे देख सकते हो--

यहां पे देख सकते हो द--

और हॉस्पिटल लिखा हुआ है यहां पे--

ये यहां पे देख सकते हो ये पेड़ लगे हुए--

ये यहां पे देख सकते हो ये आदमी बैठे हुए--

और यहां पे देख सकते हो कुंवारे लगे हुए--

पेड़ हे पेड़ लगे हुए है यहां पे--

सफेद और नीले कलर के दिख रहे हैं।

देख रहे हैं आसमान देख रहा है यहां पे बहुत सारे--

ये आदमी भीग रहे हैं यहां पर ये --

यहां पे आप देख सकते हो ये--

आसमान दिख रहा है और यहां पर हरियाली ही हरियाली--

ये यहां पे देख सकते हो।